नीचे एक ऑटो लगा हुआ है एक आदमी ऑटो पकड़ के खड़ा है और एक आदमी पीछे खड़ा है।

ये रोड है जो देखने में काफ़ी --

यह एक उत्सव भवन है जो देखने में काफ़ी बड़ा है।

यह डांस स्कूल है जहाँ पर एक टीचर बच्चे को डांस --